यह एक रेस्टोरेंट जैसा मिल रहा है सामने में सीढ़ी देखने को मिल रही है ऊपर चमचमाती लाइट भी लगी हुई है।

और सामने में बहोत सारे बिल्डिंग भी देखने को मिल रही है यहां एक ऑटो भी देखन को मिल रही है।